और एक लड़का उम्म खड़ा हुआ है जो एलो कलर का शर्ट और रेड कलर का पैंट पहने हुए है और बोहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

इस इमेज में हमें पानी दिखाई दे रहा है और कहीं-कहीं हरियाली भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारी लेडीजे हमें यहाँ नीची बैठी हुई दिखाई दे रही हैं कोई ब्लू कलर की साड़ी पहने है कोई रेड कलर की साड़ी पहने हैं कोई क्रीम कलर की साड़ी --

इस इमेज में हमे एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो एक हाथ मे अपने मोबाईल को पकड़े हुए है। ये यहाँ जिम का बहुत सारा सामान रखा है। हुआ है जिम की --

यह हुई है और एक सामने आदमी बैठा हुआ है जो मास्क लगाए हुए है वो एक नली से पानी को भर रहा है और हमें दो तीन बाल्टी भी दिखाई दे रही है।

पहने हुए हैं। ये एक हाथ में मोबाइल रखे हुए हैं और अपने मोबाइल में देख रहा है। पीछे हमें एक बॉल रखी हुई दिखाई दे रही हैं।